और एक आदमी हेलमेट भी लगाया हुआ है और यहां पर कार भी है।

और बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और यहां पर एक गोडाउन भी है।

और एक यहां प धुआं भी निकल रहा हैं।

और ऊपर में आसमान दिख रहा है जिसका रंग सफेद है।

और यहां पर बहुत सारा बाइक भी लगा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग का चित्र है बिल्डिंग का रंग लाल और सफेद है।

और ऊपर मे एक स्टील का रैलिंग भी है और एक स्कूटी भी है ।

वॉल पुट्टी भी कराया गया है और नीचे में टाइल्स भी लगाया गया है और टेबल भी है।

और टेबल में बहुत सारे प्लेटें भी है और पानी बॉटल भी है।

वाल कुट्टी भी कराया गया है और नीचे टाइल्स भी लगाया गया है।

हाटा भी मारा गया है और सुरुज भी निकल रहा है।

खिड़की भी है और वेंटिलेटर भी है।

यह एक दुकान का चित्र है जिसका रंग सफेद है।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

और एक साइकिल चला के आ रहा है और ऊपर में सफेद रंग का बादल भी दिख रहा है।

पेड़ पौधे भी हैं और झंडे भी हैं और बाउंड्री मारा गया है।